नीचे एक बाइक खड़ी है और एक गाड़ी दिखाई दे रही है यहां पर कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है।

सामने एक कुर्सी पड़ी है जिस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और यहां पर कुछ औरतें बैठी हुई दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में सामने एक दुकान दिखाई गई है जिसमें लाल कलर की मैट रखी हुई है जो रस्सी से बंधी हुई है।

इस फोटो के अंदर सामने एक मंदिर दिखाया गया है जिस पर शीशा लगा हुआ है।

इस दुकान के ऊपर एक टीन की छत बनी हुई है और उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।